वगैरह सब चीज मिल रहा है उसके आगे बाल्टी शैंपू वगैरा र--

सामने में एक बड़ा-सा घर है नहीं कोट है और उसका घर का कलर व्हाइट है व्हाइट कलर का पुट्टी किया हुआ है।

से हमें भी पेड़ लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण सेफ रहे इस पर्या--

इस पिक्चर में हमें बहोत ऊपर से फोटो लिया गया है किसी ने लिया है।

आप लोग यहां पे आके अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग जो दवाई आपको चाहिए वो सारी दवाई आपको यहां पे मिल जाएगी मैं भी प्रश्नली --

आप लोग भी आए ऐसी भवन पे शादी--

ये इसमें हमें होलसेल का फोटो --

यहां पे बहोत अच्छा सफाई सफ सफा साफ सुथरे पे ध्यान दिया गया है।

यहां पे एक बड़ा सा मूर्ति ऊपर लगा--

कुछ लोग आगे घूम के बैठे हुए हैं कुछ लोग पीछे घूम के बैठे हुए हैं।

और इधर फोटो नहीं दिखाया गया बस अ गेट का ही फोटो दिखाया गया है जगह बहोत महंगा दिख रहा है आप लोग यहाँ पे नहीं आए वरना आप लोग बर्बाद हो जाए --